भी है और एक झंडा है जिसका रंग पीले रंग का है।

और एक बैग है जिसका रंग काले रंग का है।

बहोत सारे पेड़-पौधे है जोकि हरे रंग के है और एक आदमी है।

पेड़ हैं जिनका रंग हरे रंग का है और कुछ पेड़ों में --

सामने एक दिवाल है जिसका रंग--

सफेद रंग का है और--

सामने एक किताब की दुकान है जिनका रंग--

सामने एक दुकान है जिसका रंग सफेद और--

सामने एक हॉल है जिसमें कुछ सफेद रंग के लाइट ल लगे हुए हैं।

और कुछ लोग हैं जिन्होंने--

रूम है जिसका रंग सफेद और भूरे रंग का है।